स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ए _टी_ एम् मै लोग लाइन से लगे हुए हैं लोगो के भीड़ सुबह के समय मैं रोड पे ठेला गाड़ी लगा हुआ हैं।

गोल-गोल तथा चारो तरफ बड़े-बड़े विशाल पेड़ उपलब्ध है।